ये शायद मॉल है सोरी और काफी चमक-धमक मॉल है नाम तो नहीं मालूम बट नीचे डे टायल्स लगी हुए हैं और कैरेट भी हैं बगल में ढेर सारे रखे हुए ये मॉल ही --

पाइप तो रखा हुआ है बट आदमी नजर नहीं आ रहे हैं और इसके अन्दर एक ही रूम में ए.सी. लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है| बगल में कुछ गाछ भी है आसमान भी बोहत अच्छा--

और यहाँ फोटो चीन्हा पहचाना जैसा लग रहा है | ये नेपाल - वेपाल की शायद ये फोटो है जो शुरुआती फोटो हो सकती है| मुझे तो नहीं मालूम कहाँ का फोटो है।

यहां एक मंदिर है जो अपने अंदर में है और उसके अंदर एक किसी मूर्ति खड़ा हुआ है वो नजर तो नहीं आ रहे।

ये दो मन्दिर है जो एक छोटा-सा है एक हल्का-सा बड़ा-सा है और ये मन्दिर काफी एरिया में फैला हुआ है| इसके बाउंडरी दिए हुए है और ये एक गेट है जो टट्टी से बना दिया--

कुछ बाहर में बच्चे सब ढेर सारे और दो-तीन बाइक लगी हुई है| एक ट्रक है और गाछ भी बड़े-बड़े बोहत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू |

यहाँ पर बड़े-बड़े मंदिर है जो काफी खूबसूरत डिज़ाइन से है इन सब पे लीची बत्ती जल रहे है रात को और ये किसी पर्व-वर्व की फोटो लग रहे है जो पूजा करने आए है और काफी मेला लगा हुआ है।

एक मंदिर के अंदर का फोटो है और यहाँ पर ढेर सारे म अ गॉड सब जो होते है उन लोगो का फोटो भी है और एक मूर्ति है बैठी हुई।

यहाँ पर ये बैगों की दुकान लग रहे हैं या यहाँ ढेर सारे सामान मिल रहे हैं। बैग भी मिल रहे हैं स्कूल जाने वाले और बच्चो के खेलने वाले भी झूला है और उसके बाद--